मुझे यह फोटो किसी प्रोग्राम का लग रहा है जैसे किसी की शादी यह--

यह फोटो किसी मकान के बाहर का लिया गया है।

जो काफी साफ भी है तथा इस रूम में--

पर एक भी वर्कर्स नहीं है मुझे लगता है अभी वर्कर्स रेस्ट पर गए हुए हैं।

मुझे इस फोटो में एक हॉस्पिटल का चित्र लग रहा है तथा जिसमें मरीजों के लिए--

समुद्र के किनारे या नदी के किनारे बंधी हुई है।

यह फोटो एक ग्राउंड का है।

खाने के लिए काउंटर लगे हुए हैं तथा यह व्यवस्थ काफी सुंदर लग रहा है।

बहुत ही सुंदर फोटो है थोड़ा पहाड़ों पर--

यह प्राचीन खंडहर महल लग रहा हैं।

जो काफी सुंदर लग रहे है।

यह फोटो किसी पहाड़ की गुफा का है।

तथा कुछ बाहर से देख रहे हैं।